यहां सामने कुछ घर बने हुए हैं।

इस पार्क में बहुत ज्यादा हरियाली है।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

इनमें कुछ सामान रखा हुआ है।

यहां पर सामने शीशे का गेट लगा हुआ है।

यह एक जंगल का इलाका है।

और यहां पर काफी सारा सरिया पड़ा हुआ है।

और कुछ व्यक्ति सेल्फी ले रहे हैं।

और कुछ बोरी भी रखी हुई है।

यहां पर कुछ फंक्शन हो रहा है।

और एक व्यक्ति की टांगे दिख रही है।